पेड़ देखने तो मिल रहा है पेड़ ते नीचे हमें एत लड़का देखने तो मिल रहा है उसते साइड में हमें नीचे में --

हमें यहाँ पे हाईवे का फोटो देखने को मिल रहा है हाईवे के बगल में बहुत सारे बैरीकेड लगे हुए देखने को मिल रहे हैं वहीं पे हमें ये--

जिसते ऊपर वाइट कलर का और सिल्वर कलर का प्लाई बोर्ड लगा हुआ देखने को मिल रहा है ऊपर में हमें बहुत सारे लाइट देखने को मिल रहे हैं साइड में हमें फैन देखने को मिल--

टेबल देखने को मिल रहा है जो कि वाइट कलर का है उसका अंदर में हमें झाड़ू देखने को मिल रहा है दुकान के ऊपर हमें--

मुझे यहां पर बड़ा सा लाल कलर का मकान देखने को मिल रहा है उसके नीचे हमें यहां पर पाइप देखने को मिल रहा है।

साइड में बहोत सारे लोहा लगे हुए है गेट देखने को मिल रहे है उसके ऊपर हमें आसमान देखने को मिल रहा है।

मुझे यहां पे एक मंदिर देखने को मिल रहा है मंदिर के सामने हमे यहां बहोत सारे ईंट व्हाइट कलर के ईंटा--

सामान से वो देखने को मिल रहा है जैसे अगरबत्ती रखा हुआ देखने को मिल रहा है वहीं पर मुझे सेवई देखने को मिल रहा है पास में मुझे यहाँ पर एक--

यहां पर एक स्टार रेफरी स्टार रेफ्रिजरेशन का बोर्ड लगा हुआ देखने को मिल रहा है इसके नीचे हमें साइड में--

नाम जॉनसन्स लिखा हुआ है उसके साइड में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है।

के ऊपर शीशा लगा हुआ देखने को मिल रहा है साइड में हमें एक बड़ा सा पोल देखने को मिल रहा है।

कुर्सी देखने को मिल रहा है जो कि ऑरेंज कलर का है अंदर में हमें टेबल देखने को मिल रहा है ऊपर में--

सोफा देखने को मिल रहा है साइड में हमें यहाँ पर दो बड़े-बड़े देखने को मिल रहे हैं पीछे में हमें फूल सब देखने को मिल रहे हैं।

बहोत सारी लाइट देखने को मिल रहे हैं बीच में हमें बड़ा सा पाइप देखने को मिल रहा है जिससे ऊपर चार लाइट लगा हुआ है।

मोटरसाइकल देखने को मिल रहे हैं ऊपर में हमें आसमान देखने को मिल रहा है अंदर में हमें पेड़ देखने को मिल रहा है।

मुझे इस चित्र में एक पार्क देखने को मिल रहा है पार्क के बगल में मुझे एक बड़ा सा पाइप देखने को मिल रहा है जिसे लाल रंग से पेंट किया गया है वहीं पर हमें--

बस के अंदर मुझे बहुत सारे आदमी देखने को मिल रहे ऊपर में मुझे एक साइड में पेड़ देखने को मिल रहा है।

ऊपर में मुझे बहोत सारे बैलून लगे हुए देखने को मिल रहे हैं अंदर में मुझे लाइट देखने को मिल रहा है।